इसमें बहोत सारे समानें रखे हुए हैं जिसमें से कुछ बॉटल दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं और येलो कलर के हैं।

और कुछ डब्बे दिखाई दे रहे हैं जो मिट्टी कलर के है।

यहां पर मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जो शिशा का है जिसके चारों तरफ कुछ स्टील लगा हुआ है जो ग्रे कलर का है।

यहां पर मुझे कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही है जो रखी हुई है जो ब्लू कलर की है व ग्रीन कलर की है और वाइट कलर की है।

और कुछ पर्दे दिखाई दे रहे है जो ब्ल्यू कलर के है।

इसमें कुछ बैनर लगे हुए है जो वाइट कलर के है जिसमें रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है और एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का है।

और कुछ टेबल दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं और कुछ गमले दिखाई दे रहे हैं जो वाइट कलर के हैं और मिट्टी कलर के हैं जिसमें कुछ पौधे लगे हैं।

और कुछ क्लिप्स लगाए गए हैं जो ऑरेंज कलर के है।

और एक कारपेट दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है।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

और कुछ केले के पत्ते दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है।

और एक बैनर दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ पत्ते दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के है।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

यहां पर मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और रेड कलर का है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा रेस्टोरेंट का बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है और ब्लैक कलर का है।

और कुछ चेयरें दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की है और बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

और बाइक दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है और ब्लैक कलर की है।

औ बहोत सारे औरत और आदमी और बच्चे लोग दिखाई दे रहे है जो खड़े है।

यहां पर मुझे दो रास्ते दिखाई दे रहे है जिसमें कुछ ताली पीछे हुए है जो पिंक कलर के है और येलो कलर के है और ग्रे कलर के है।

इसमें कुछ कुर्सियां दिखाई दे रहीं हैं जो व्हाइट कलर की हैं।

और एक ट्रक दिखाई दे रहा है जो येलो कलर का है और वाइट कलर का है।

और एक आधा शीशा दिखाई दे रहा है जो गाड़ी का है।

और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है।

यहां पर मुझे कुछ छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं जिनमें से क्रीम कलर का है और ब्लू कलर का है।

इसमें कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है जिसमें लोहे लगे हुए है।

और दो बच्चे के स्टैचू बने हुए हैं जो वाइट कलर के हैं जिसमें कुछ कपड़े पहने हुए हैं।

और एक साइकिल दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है।

इसमें बहोत सारे लाइटें दिखाई दे रही है जो येलो कलर की है और वाइट कलर की है।

जिनमें कुछ पेन दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग कलर के है।

और कुछ स्टिकर दिखाई दे रहे है जो येलो कलर के है।

और एक जैसी भी दिखाई दे रहा है जो हल्का ऑरेंज कलर का है।